नमस्कार introduction to libreoffice writer पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे :
libreoffice writer
writer में विभिन्न toolbars
एक नया और मौजूदा document कैसे खोलें
writer में document सेव और बंद करना
ms word document के रूप में सेव करना
pdf document के रूप में export करना
libreoffice writer libreoffice suite का word processor घटक है
यह microsoft office suite के microsoft word के समतुल्य है
यह free और open source सॉफ्टवेयर है
इसे बिना किसी प्रतिबंध के साझा संशोधित और वितरित किया जा सकता है
libreoffice writer निम्न में से किसी भी operating systems पर कार्य कर सकता है:
microsoft windows 8 या उच्चतम versions
gnu/linux os और
mac osx
यह tutorial ubuntu linux os version 1804 और libreoffice suite version 635 का उपयोग करके recorded किया गया है
default रूप से नवीनतम ubuntu linux os में libreoffice suite पहले से ही संस्थापित है
विशिष्ट version संस्थापित करने के लिए इस website पर libreoffice installation श्रृंखला का अनुकरण करें
सीखते हैं कि libreoffice writer कैसे open करें
ubuntu linux os में नीचे बाएं कोने पर स्थित show applications icon पर click करें
search bar में type करें writer
प्रदर्शित सूची से libreoffice writer icon पर click करें
windows os में नीचे बाएं कोने पर स्थित start menu icon पर click करें
search bar में type करें writer
प्रदर्शित सूची से libreoffice writer icon पर click करें
यह मुख्य writer window में एक खाली document खोलेगा
अब हम writer window के मुख्य घटकों के बारे में सीखते हैं
शीर्ष पर writer window में विभिन्न toolbars हैं
वे हैं title bar menu bar standard toolbar और formatting bar
नीचे हम देखते हैं search bar drawing toolbar और status bar
हम interface से इन toolbars को सक्षम या अक्षम कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए view menu पर जाएं और toolbars चुनें
sub menu से अपनी पसंद के आधार पर toolbars को check या अनचेक करें
दाईं ओर हम ऊर्ध्वाधर scroll bar और sidebar देखते हैं
इन सभी में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले विकल्प हैं
जैसेजैसे श्रृंखला आगे बढ़ेगी हम इनके बारे में जानेंगे
अब writer में एक now document खोलना सीखते हैं
हम standard toolbar में new icon पर क्लिक करके एक नया document खोल सकते हैं
वैकल्पिक रूप से menu bar में file menu पर जाएं
फिर sub menu new पर click करें और विकल्प text document चुनें
untitled 2 named एक नया writer document खुलता है
शीर्ष दाईं ओर दिए गए x icon पर क्लिक करके नए खुले document untitled 2 को बंद करें
अब हम untitled 1 document में कुछ text type करेंगे
resume शब्द type करें
अपना document लिखने के बाद हमें इसे भविष्य में उपयोग के लिए सेव करना चाहिए
file को सेव करने के लिए standard toolbar में save icon पर click करें
screen पर एक dialog box प्रदर्शित होता है
यह हमें name field में हमारी फ़ाइल का name दर्ज करने के लिए प्रेरित करता है
मैं फाइल का name resume type करूंगी
बाईं ओर मैं अपनी फ़ाइल को सेव करने के स्थान के रूप desktop चुनूंगी
ध्यान दें हमारे पास नीचे दाएं कोने पर file type ड्रॉपडाउन है इस ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें
यह file types या file extensions की सूची दर्शाता है जिसमें हम अपनी file सेव कर सकते हैं
libreoffice writer में default file type odf text document odt है
odf अर्थात open document format जो open standard है
इसे open standards in egovernance पर भारत सरकार policy द्वारा भी स्वीकार किया जाता है
मैं मेरी फाइल को सेव करने के लिए odf text document विकल्प पर click करूंगी
इसी तरह अपनी machine पर करें
dialog box के ऊपरी दाएं कोने में save button पर click करें
हमें writer window पर वापस भेज दिया जाएगा
अब title bar में बदलाव पर ध्यान दें यह resume odt में बदल गया है
dot odt format में सेव करने के बजाय आप अपनी file को dot doc और dot docx format में भी सेव कर सकते हैं
इस फॉर्मेट की files बाद में ms word application में खुल सकती हैं
अब हम उसी फाइल को docx फाइल के रूप में सेव करेंगे
menu bar में file menu पर जाएं और फिर save as विकल्प कर click करें
save as dialog box में नीचे दाएं कोने पर स्थित file type ड्रॉपडाउन पर click करें
नीचे scroll करें और word 2007365 docx चुनें
फिर से सेव करने के लिए उसी file का स्थान चुनें
फिर dialog box के ऊपरी दाएं कोने पर save button पर click करें
यदि हम file को किसी any file format में सेव करते हैं तो confirm file format dialog box खुलता है
ask when not saving in odf or default format विकल्प को check करें
फिर use word 2007365 format button पर click करें
हमें writer window पर वापस भेज दिया जाएगा
अब title bar में बदलाव देखें यह resume docx में बदल गया है
file को pdf format में भी exported किया जा सकता है
standard toolbar में export directly as pdf icon पर click करें
type करें filename स्थान चुनें और ऊपर दाईं ओर पर स्थित save button पर click करें
मैं cancel पर click करूंगी और document को pdf format में सेव करने का दूसरा तरीका दिखाऊंगी
menu bar में file menu पर click करें और export as submenu विकल्प चुनें फिर export as pdf विकल्प पर click करें
pdf options dialog box opens होता है
इस dialog box में हम pdf विकल्प को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न settings देखेंगे
default settings को उसी तरह रखें और नीचे दिए गए export button पर click करें
filename type करें स्थान चुनें और ऊपर दाईं ओर पर स्थित save button पर click करें
चयनित स्थान में एक pdf file बन जाएगी
अन्य प्रसिद्ध extension जो अधिकतर applications में खुलता है वह dot rtf rich text format है
हम dot html format में भी file सेव कर सकते हैं जो कि web page format है
यह उसी तरह किया जाता है जैसे ऊपर बताया गया है
file type ड्रापdown में नीचे scroll करें और html document writer html चुनें
यह विकल्प document को dot html extension प्रदान करता है
सेव करने के लिए फिर से उसी file का स्थान चुनें अब डायलॉग बॉक्स के ऊपरी दाएं कोने पर save बटन पर क्लिक करें
confirm file format dialog box खुलता है
ask when not saving in odf or default format विकल्प पर check करें
फिर use html document writer format button पर click करें
हम देखते हैं कि फ़ाइल dot html extension के साथ सेव हो जाती है
इस format का उपयोग तब किया जाता है जब हम अपने document को web page के रूप में दिखाना चाहते हैं
यह किसी भी web browser में खुल सकता है
file menu और फिर close पर क्लिक करके इस document को बंद करें
आगे हम सीखेंगे कि लिबर ऑफिस writer में मौजूदा document को कैसे खोला जाता है document resume odt खोलें
interface के बाईं ओर पर स्थित open file menu पर click करें
फ़ाइल browser dialog box खुलता है उस स्थान पर जाएं जहां हमारी फ़ाइल सेव की गई है
अब दिखाई देने वाले फ़ाइलनाम की सूची में resume odt चुनें
इसके बाद open दाहिने कोने में open button पर click करें
writer window में file resume odt खुलती है
इसीतरह हम writer में dot doc और dot docx extensions के साथ भी files खोल सकते हैं
आगे हम देखेंगे कि फाइल को संशोधित और उसी filename के साथ सेव कैसे करें
अतः पहले शब्द resume चुनें
ऐसा करने के लिए बाएं mouse button को click करें और फिर इसे text के साथ खींचें यह text को चुनेगा और इसे चिन्हांकित करेगा
अब बाएं mouse button को छोड़ दें टेक्स्ट अभी भी चिन्हांकित रहना चाहिए
अब formatting bar में bold icon पर click करें टेक्स्ट bold हो जाता है
इसके बाद हम पेज के centre में शब्द resume को अलाइन करते हैं
यदि आपने अपने libreoffice window को रिसाइज किया है तो कुछ icons दिखाई नहीं दे सकते हैं
उस स्थिति में toolbars के अंत में double arrow icon पर click करें
formatting bar में align center icon पर click करें
हम देखते हैं कि text पेज के केंद्र से अलाइन हो जाता है
अब text का font size बढ़ाते हैं
अतः formatting bar में font size field में downarrow पर click करें
ड्रापडाउन में 14 चुनें टेक्स्ट का font size 14 हो जाता है
अब हम font को बदलते हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं
formatting bar में font name field में downarrow पर click करें
ड्रापडाउन में undotum चुनें टेक्स्ट का font name undotum में बदल जाता है
अब अपने द्वारा किए गए बदलवों को सेव करें ऐसा करने के लिए ctrl + s कीज़ को एक साथ दबाएँ
संशोधन the जाने के बाद भी फ़ाइल उसी फ़ाइल नाम के साथ सेव हो जाती है
अब document को बंद करें
menu bar में file menu पर click करें और फिर close विकल्प पर click करें
इसी के साथ हम इस स्पोकन tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में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
libreoffice writer
विभिन्न toolbars
एक नया और मौजूदा document कैसे खोलें
writer में document सेव और बंद करना
ms word document के रूप में सेव करना
pdf document के रूप में export करना
नियतकार्य के रूप में राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट खोलें
इसे practice odt से सेव करें
this is my first assignment text type करें
text को underline करें
font size को 16 करें file को सेव और बंद करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
हम spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
क्या आपके पास इस spoken tutorial से संबंधित कोई प्रश्न है कृपया इस साइट पर जाएं
minute और second चुनें जहां आपके पास प्रश्न है अपने प्रश्न को संक्षेप में बताएं
spoken tutorial project team उत्तर सुनिश्चित करेगी
प्रश्न पूछने के लिए आपको इस website पर पंजीकरण करना होगा
spoken tutorial forum इस tutorial के विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
कृपया उन पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न post न करें यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा
कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को निर्देशात्मक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं
spoken tutorial project mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस tutorial का योगदान मूलरूप से 2011 में desicrew solutions pvt ltd द्वारा दिया गया था
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद